मेरे प्यारे देशवासियो आप सबको नमस्कार
बीते दिनों जम्मूकश्मीर के उरी सेक्टर में एक आतंकी हमले में हमारे देश के 18 वीर सपूतों को हमने खो दिया
मैं इन सभी बहादुर सैनिकों को नमन करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ
इस कायराना घटना पूरे देश को झकझोरने के लिए काफ़ी थी
देश में शोक भी है आक्रोश भी है और ये क्षति सिर्फ़ उन परिवारों की नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया भाई खोया पति खोया
ये क्षति पूरे राष्ट्र की है
और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूँगा और जो मैंने उसी दिन कहा था मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूँ कि दोषी सज़ा पा करके ही रहेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो हमें हमारी सेना पर भरोसा है
वे अपने पराक्रम से ऐसी हर साज़िश को नाकाम करेंगे और देश के सवासौ करोड़ देशवासी सुखचैन की ज़िंदगी जी सकें इसके लिए वो पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले लोग हैं
हमारी सेना पर हमें नाज़ है
हम नागरिकों के लिए राजनेताओं के लिए बोलने के कई अवसर होते हैं
हम बोलते भी हैं
लेकिन सेना बोलती नहीं है
सेना पराक्रम करती है
मैं आज कश्मीर के नागरिकों से भी विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ
कश्मीर के नागरिक देशविरोधी ताक़तों को भलीभाँति समझने लगे हैं
और जैसेजैसे सच्चाई समझने लगे हैं वे ऐसे तत्वों से अपनेआप को अलग करके शांति के मार्ग पर चल पड़े हैं
हर माँबाप की इच्छा है कि जल्द से जल्द स्कूलकॉलेज पूरी तरह काम करें
किसानों को भी लग रहा है कि उनकी जो फ़सल फल वगैरह तैयार हुए हैं वो हिन्दुस्तान भर के मार्केट में पहुँचें
आर्थिक कारोबार भी ठीक ढंग से चले
और पिछले कुछ दिनों से कारोबार सुचारु रूप से चलना शुरू भी हुआ है
हम सब जानते हैं शान्ति एकता और सद्भावना ही हमारी समस्याओं का समाधान का रास्ता भी है हमारी प्रगति का रास्ता भी है हमारे विकास का भी रास्ता है
हमारी भावी पीढ़ियों के लिये हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है
मुझे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान हम मिलबैठ करके खोजेंगे रास्ते निकालेंगे और साथसाथ कश्मीर की भावी पीढ़ी के लिये उत्तम मार्ग भी प्रशस्त करेंगे
कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा ये शासन की जिम्मेवारी होती है
क़ानून और व्यवस्था बनाने के लिये शासन को कुछ क़दम उठाने पड़ते हैं
मैं सुरक्षा बलों को भी कहूँगा कि हमारे पास जो सामर्थ्य है शक्ति है क़ानून हैं नियम हैं उनका उपयोग क़ानून और व्यवस्था के लिये है कश्मीर के सामान्य नागरिकों को सुखचैन की ज़िन्दगी देने के लिये है और उसका हम भलीभाँति पालन करेंगे
कभीकभार हम जो सोचते हैं उससे अलग सोचने वाले भी लोग नयेनये विचार रखते हैं
सोशल मीडिया में इन दिनों मुझे बहुतकुछ जानने का अवसर मिलता है हिन्दुस्तान के हर कोने से हर प्रकार के लोगों के भावों को जाननेसमझने का अवसर मिलता है और ये लोकतंत्र की ताक़त को बढ़ावा देता है
पिछले दिनों 11वीं कक्षा के हर्षवर्द्धन नाम के एक नौजवान ने मेरे सामने एक अलग प्रकार का विचार रखा
उसने लिखा है उरी आतंकवादी हमले के बाद मैं बहुत विचलित था
कुछ कर गुज़रने की तीव्र लालसा थी
लेकिन करने का कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था
और मुझ जैसा एक छोटासा विद्यार्थी क्या कर सकता है
तो मेरे मन में आया कि मैं भी देशहित के लिए काम कैसे आऊँ
और मैंने संकल्प किया कि मैं रोज़ 3 घंटे अधिक पढ़ाई करूँगा
देश के काम आ सकूँ ऐसा योग्य नागरिक बनूँगा
भाई हर्षवर्द्धन आक्रोश के इस माहौल में इतनी छोटी उम्र में आप स्वस्थता से सोच सकते हो यही मेरे लिए ख़ुशी की बात है
लेकिन हर्षवर्द्धन मैं ये भी कहूँगा कि देश के नागरिकों के मन में जो आक्रोश है उसका एक बहुतबड़ा मूल्य है
ये राष्ट्र की चेतना का प्रतीक है
ये आक्रोश भी कुछ कर गुज़रने के इरादों वाला है
हाँ आपने एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से उसको प्रस्तुत किया
लेकिन आपको पता होगा जब 1965 की लड़ाई हुई लाल बहादुर शास्त्री जी हमारा नेतृत्व कर रहे थे और पूरे देश में ऐसा ही एक जज़्बा था आक्रोश था देशभक्ति का ज्वार था हर कोई कुछनकुछ हो ऐसा चाहता था कुछनकुछ करने का इरादा रखता था
तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ही उत्तम तरीक़े से देश के इस भावविश्व को स्पर्श करने का बड़ा ही प्रयास किया था
और उन्होंने जय जवान जय किसान मंत्र देकर के देश के सामान्य मानव को देश के लिए कार्य कैसे करना है उसकी प्रेरणा दी थी
बमबन्दूक की आवाज़ के बीच देशभक्ति को प्रकट करने का और भी एक रास्ता हर नागरिक के लिये होता है ये लालबहादुर शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया था
महात्मा गाँधी भी जब आज़ादी का आन्दोलन चलाते थे आन्दोलन जब तीव्रता पर होता था और आन्दोलन में एक पड़ाव की ज़रूरत होती थी तो वे आन्दोलन की उस तीव्रता को समाज के अन्दर रचनात्मक कामों की ओर प्रेरित करने के लिए बड़े सफल प्रयोग करते थे
हम सब सेना अपनी ज़िम्मेवारी निभाए शासन बैठे हुए लोग अपना कर्तव्य निभाएँ और हम देशवासी हर नागरिक इस देशभक्ति के जज़्बे के साथ हम भी कोईनकोई रचनात्मक योगदान दें तो देश अवश्य नई ऊंचाइयों को पार करेगा
मेरे प्यारे देशवासियो श्रीमान टी एस कार्तिक ने मुझे NarendraModiApp पर लिखा कि पैरालम्पिक्स में जो एथलीट्स गए थे उन्होंने इतिहास रचा और उनका प्रदर्शन ह्यूमन स्पिरिट की जीत है
श्रीमान वरुण विश्वनाथन ने भी NarendraModiApp पर लिखा कि हमारे एथलीट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया
आपको मन की बात में उसका ज़िक्र करना चाहिये
आप दो नहीं देश के हर व्यक्ति को पैरालम्पिक्स में हमारे खिलाडियों के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ है
शायद खेल से भी बढ़कर इस पैरालम्पिक्स ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है
और मैं हमारी विजेता बहन दीपा मलिक की इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा
जब उसने मेडल प्राप्त किया तो उसने ये कहा इस मेडल से मैंने विकलांगता को ही पराजित कर दिया है
इस वाक्य में बहुत बड़ी ताक़त है
इस बार पैरालम्पिक्स में हमारे देश से 3 महिलाओं समेत 19 एथलीट्स ने हिस्सा लिया
बाकी खेलों की तुलना में जब दिव्यांग खेलते हैं तो शारीरिक क्षमता खेल का कौशल्य इस सबसे भी बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति
आपको ये जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 पदक हासिल किए हैं 2 स्वर्ण 1 रजत 1 काँस्य पदक शामिल हैं
गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले भाई देवेन्द्र झाझरिया भाला फेंक में वो दुबारा गोल्ड मेडल लाए और 12 साल के बाद दुबारा ले आए
12 साल में उम्र बढ़ जाती है
एक बार गोल्ड मेडल मिलने के बाद कुछ जज़्बा भी कम हो जाता है लेकिन देवेन्द्र ने दिखा दिया कि शरीर की अवस्था उम्र का बढ़ना उनके संकल्प को कभी भी ढीला नहीं कर पाया और 12 साल के बाद दोबारा गोल्ड मेडल ले आए
और वे जन्म से दिव्यांग नहीं थे
बिजली का करेंट लगने के कारण उनको अपना एक हाथ गँवाना पड़ा था
आप सोचिए जो इंसान 23 साल की उम्र में पहला गोल्ड मेडल प्राप्त करे और 35 साल की उम्र में दूसरा गोल्ड मेडल प्राप्त करे उन्होंने जीवन में कितनी बड़ी साधना की होगी
मरियप्पन थन्गावेलु हिघ जंप में स्वर्ण पदक जीता
और थन्गावेलु ने सिर्फ़ 5 साल की उम्र में अपना दाहिना पैर खो दिया था
ग़रीबी भी उनके संकल्प के आड़े नहीं आई
न वो बड़े शहर के रहने वाले हैं न मध्यमवर्गीय अमीर परिवार से हैं
21 साल की उम्र में कठिनाइयों भरी ज़िंदगी से गुज़रने के बावजूद भी शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद भी संकल्प के सामर्थ्य से देश को मेडल दिलवा दिया
एथलीट दीपा मलिक के नाम पर तो कई प्रकार के विजयपताकायें फहराने का उनके नाम के साथ जुड़ चुका है
वरुण सी भाटी ने ऊँची कूद में काँस्य पदक हासिल किया
पैरालम्पिक्स के मेडल उसका माहात्म्य तो है ही है हमारे देश में हमारे समाज में हमारे अड़ोसपड़ोस में हमारे जो दिव्यांग भाईबहन हैं उनकी तरफ़ देखने के लिये इन मेडलों ने बहुत बड़ा काम किया है
हमारी संवेदनाओं को तो जगाया है लेकिन इन दिव्यांगजनों के प्रति देखने के दृष्टिकोण को भी बदला है
बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस बार के पैरालम्पिक्स में ये दिव्यांगजनों ने कैसा पराक्रम किया है
कुछ ही दिनों पहले उसी स्थान पर ओलम्पिक्स स्पर्द्धा हुई
कोई सोच सकता है कि जनरल ओलम्पिक्स के रेकॉर्ड को दिव्यांग लोगों ने भी ब्रेक कर दिया तोड़ दिया
इस बार हुआ है
1500 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें जो ओलम्पिक्स स्पर्द्धा थी उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले ने जो रेकॉर्ड बनाया था उससे दिव्यांग की स्पर्द्धा में अल्जीरिया के अब्देल्लतीफ बाका ने 17 सेकंड कम समय में 1500 मीटर दौड़ में एक नया रेकॉर्ड बना दिया
इतना ही नहीं मुझे ताज्जुब तो तब हुआ कि दिव्यांगजनों में जिसका चौथा नंबर आया धावक के नाते कोई मेडल नहीं मिला वो जनरल धावकों में गोल्ड मेडल पाने वाले से भी कम समय में दौड़ा था
मैं फिर एक बार हमारे इन सभी खिलाड़ियों को बहुतबहुत बधाई देता हूँ और आने वाले दिनों में भारत पैरालम्पिक्स के लिये भी उसके विकास के लिये भी एक सुचारु योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है
मेरे प्यारे देशवासियो पिछले सप्ताह मुझे गुजरात के नवसारी में कई अद्भुत अनुभव हुए
बड़ा इमोशनल पल था मेरे लिये
दिव्यांगजनों के लिये एक मेगा कैम्प भारत सरकार का लगाया गया था और कई सारे वर्ल्ड रेकॉर्ड हो गए उस दिन
और वहाँ मुझे एक छोटीसी बिटिया जो दुनिया देख नहीं सकती है गौरी शार्दूल और वो भी डांग ज़िले के दूरसुदूर जंगलों से आई हुई और बहुत छोटी बच्ची थी
उसने मुझे काव्यमय पठन के द्वारा पूरी रामायण उसको मुखपाठ है
उसने मुझे कुछ अंश सुनाए भी और वो मैंने वहाँ लोगों के सामने भी प्रस्तुत किया तो लोग हैरान थे
उस दिन मुझे एक किताब का लोकार्पण करने का अवसर मिला
उन्होंने कुछ दिव्यांगजनों के जीवन की सफल गाथाओं को संग्रहित किया था
बड़ी प्रेरक घटनायें थीं
भारत सरकार ने नवसारी की धरती पर विश्व रिकॉर्ड किया जो महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ
आठ घंटे के भीतरभीतर छहसौ दिव्यांगजन जो सुन नहीं पाते थे उनको सुनने के लिए मशीनें फीड करने का सफल प्रयोग किया
गिनेस बुक ओएफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में उसको स्थान मिला
एक ही दिन में दिव्यांगों के द्वारा तीनतीन वर्ल्ड रेकॉर्ड होना हम देशवासियों के लिए गौरव की बात है
मेरे प्यारे देशवासियो दो साल पहले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन को हमने प्रारंभ किया था
और उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वच्छ्ता ये स्वभाव बनना चाहिए हर नागरिक का कर्तव्य बनना चाहिए गंदगी के प्रति नफ़रत का माहौल बनना चाहिए
अब 2 अक्टूबर को जब दो वर्ष हो रहे हैं तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश के सवासौ करोड़ देशवासियों के दिल में स्वच्छ्ता के प्रति जागरूकता बढ़ी है
और मैंने कहा था एक कदम स्वच्छ्ता की ओर और आज हम सब कह सकते हैं कि हर किसी ने एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया ही है
मतलब कि देश सवासौ करोड़ कदम स्वच्छ्ता की ओर आगे बढ़ा है
ये भी पक्का हो चुका है दिशा सही है फल कितने अच्छे होते हैं थोड़े से प्रयास से क्या होता है वो भी नज़र आया है और इसलिए हर कोई चाहे सामान्य नागरिक हो चाहे शासक हो चाहे सरकार के कार्यालय हों या सड़क हो बसअड्डे हों या रेल हो स्कूल या कॉलेज हो धार्मिक स्थान हो अस्पताल हो बच्चों से लेकर बूढों तक गाँव ग़रीब किसान महिलाएँ सब कोई स्वच्छ्ता के अन्दर कुछनकुछ योगदान दे रहे हैं
मीडिया के मित्रों ने भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई है
मैं भी चाहूँगा कि हमें अभी भी और बहुत आगे बढ़ना है
लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है प्रयास भरपूर हुए हैं और हम कामयाब होंगे ये विश्वास भी पैदा हुआ है
ये भी तो ज़रूरी होता है और तभी तो ग्रामीण भारत की बात करें तो अब तक दो करोड़ अड़तालीस लाख यानि करीबकरीब ढाईकरोड़ शौचालय का निर्माण हुआ है और आने वाले एक साल में डेढ़ करोड़ और शौचालय बनाने का इरादा है
आरोग्य के लिये नागरिकों के सम्मान के लिये ख़ास करके माताओंबहनों के सम्मान के लिये खुले में शौच जाने की आदत बंद होनी ही चाहिए और इसलिये ओपन डेफेकेशन फ्री ओडीएफ खुले में शौच जाने की आदतों से मुक्ति उसका एक अभियान चल पड़ा है
राज्योंराज्यों के बीच ज़िलेज़िले के बीच गाँवगाँव के बीच एक स्वस्थ स्पर्द्धा चल पड़ी है
आंध्र प्रदेश गुजरात और केरल खुले में शौच जाने की आदत से मुक्ति की दिशा में बहुत ही निकट भविष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे
मैं अभी गुजरात गया था तो मुझे अफ़सरों ने बताया कि पोरबंदर जो कि महात्मा गाँधी का जन्म स्थान है इस 2 अक्टूबर को पोरबंदर पूरी तरह ओडीएफ का लक्ष्य सिद्ध कर लेगा
जिन्होंने इस काम को किया है उनको बधाई जो करने का प्रयास कर रहे हैं उनको शुभकामनायें और देशवासियों से मेरा आग्रह है कि माँबहनों के सम्मान के लिये छोटेछोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिये इस समस्या से हमें देश को मुक्त करना है
आओ हम संकल्प ले करके आगे बढ़ें
खासकर के मैं नौजवान मित्र जो कि आजकल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं उनके लिये एक योजना प्रस्तुत करना चाहता हूँ
स्वच्छता मिशन का आपके शहर में क्या हाल है ये जानने का हक़ हर किसी को है और इसके लिये भारत सरकार ने एक टेलीफ़ोन नंबर दिया है 1969
हम जानते हैं 1869 में महात्मा गाँधी का जन्म हुआ था
1969 में हमने महात्मा गाँधी की शताब्दी मनाई थी
और 2019 में महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती मनाने वाले हैं
ये 1969 नंबर उस पर आप फ़ोन करके न सिर्फ़ अपने शहर में शौचालयों के निर्माण की स्थिति जान पाएँगे बल्कि शौचालय बनवाने के लिए आवेदन भी कर पाएँगे
आप ज़रूर उसका लाभ उठाएँ
इतना ही नहीं सफाई से जुड़ी शिकायतों और उन शिकायतों के समाधान की स्थिति जानने के लिये एक स्वच्छता App की शुरुआत की है
आप इसका भरपूर फायदा उठाएँ खासकर के यंग जनरेशन फायदा उठाए
भारत सरकार ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी अपील की है कि वे आगे आएँ
स्वच्छता के लिये काम करना जो चाहते हैं ऐसे यंग प्रोफेशनल्स को स्पॉन्सर करें
ज़िलों के अन्दर स्वच्छ भारत फेलोज के रूप में उनको भेजा जा सकता है
ये स्वच्छता अभियान सिर्फ संस्कारों तक सीमित रहने से भी बात बनती नहीं है
स्वच्छता स्वभाव बन जाए इतने से ही काफ़ी नहीं है
आज के युग में स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य जैसे जुड़ता है वैसे स्वच्छता के साथ रेवेन्यू मॉडेल भी अनिवार्य है
वास्ते टो वेल्थ ये भी उसका एक अंग होना ज़रूरी है और इसलिये स्वच्छता मिशन के साथसाथ वास्ते टो कंपोस्ट की तरफ़ हमें आगे बढ़ना है
सोलिड वास्ते की प्रोसेसिंग हो
कंपोस्ट में बदलने के लिये काम हो और इसके लिये सरकार की तरफ़ से पॉलिसी इंटरवेंशन की भी शुरुआत की गई है
फर्टिलाइजर कंपनियों को कहा है कि वे वास्ते में से जो कंपोस्ट तैयार होता है उसको ख़रीदें
जो किसान आर्गेनिक फार्मिंग में जाना चाहते हैं उनको ये मुहैया कराएँ
जो लोग अपनी ज़मीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं धरती की तबीयत की फ़िक्र करते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर के कारण काफ़ी नुकसान हो चुका है उनको अगर कुछ मात्रा में इस प्रकार की खाद की ज़रूरत है तो वो मुहैया कराएँ
और श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बासाडोर के रूप में इस काम में काफ़ी योगदान दे रहे हैं
मैं नौजवानों को वास्ते टो वेल्थ इस मूवमेंट में नयेनये स्टार्टअप के लिए भी निमंत्रित करता हूँ
वैसे साधन विकसित करें वैसी टेक्नोलॉजी विकसित करें सस्ते में उसके मस्स प्रोडक्शन का काम करें
ये करने जैसा काम है
बहुत बड़ा रोज़गार का भी अवसर है
बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि का भी अवसर है
और वास्ते में से वेल्थ क्रिएशन ये सफल होता है
इसी वर्ष 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष कार्यक्रम इंडोसन इंडिया सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है
देश भर से मंत्री मुख्यमंत्री महानगरों के मायोर कमिश्नर ये सब मिल करके सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वच्छता इसी पर गहन चिंतनमनन करने वाले हैं
टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है फाइनेंशियल मॉडेल क्या हो सकता है जनभागीदारी कैसे हो सकती है रोज़गार के अवसर इसमें कैसे बढ़ाये जा सकते हैं सब विषयों पर चर्चा होने वाली है
और मैं तो देख रहा हूँ कि लगातार स्वच्छता के लिये नईनई ख़बरें आती रहती हैं
अभी एक दिन मैंने अख़बार में पढ़ा कि गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने 107 गाँवों में जाकर शौचालय निर्माण के लिये जागरण अभियान चलाया
स्वयं ने श्रम किया और क़रीबक़रीब 9 हज़ार शौचालय बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया
पिछले दिनों आपने देखा होगा विंग कमांडर परमवीर सिंह की अगुवाई में एक टीम ने तो गंगा में देवप्रयाग से ले करके गंगा सागर तक 2800 किलोमीटर की यात्रा तैर करके की और स्वच्छता का संदेश दिया
भारत सरकार ने भी अपनेअपने विभागों ने एक सालभर का कैलेंडर बनाया है
हर डिपार्टमेंट 15 दिन विशेष रूप से स्वच्छता पर फोकस करता है
आने वाले अक्टूबर महीने में 1 से 15 अक्टूबर तक ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये तीनों मिल करके अपनेअपने क्षेत्र में स्वच्छता का रोडमैप बना करके काम करने वाले हैं
और अक्टूबर महीने के लास्ट त्वो week16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तीन और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कृषि और किसान कल्याण विभाग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कंज्यूमर अफेयर्स ये डिपार्टमेंट 15 दिन अपने साथ संबंधित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सफ़ाई अभियान चलाने वाले हैं
मेरा नागरिकों से भी अनुरोध है कि ये विभागों के द्वारा जो काम चलता है उसमें आपका कहीं संबंध आता है तो आप भी जुड़ जाइए
आपने देखा होगा इन दिनों स्वच्छता का सर्वे अभियान भी चलता है
पहले एक बार 73 शहरों के सर्वे करके स्वच्छता की क्या स्थिति है उसको देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था
अब 1 लाख से ऊपर जनसँख्या वाले जो 500 के क़रीब शहर हैं उनकी बारी है और इसके कारण हर शहर के अन्दर एक विश्वास पैदा होता है कि चलो भाई हम पीछे रह गए अब अगली बार हम कुछ अच्छा करेंगे
एक स्वच्छता की स्पर्द्धा का माहौल बना है
मैं आशा करता हूँ कि हम सभी नागरिक इस अभियान में जितना योगदान दे सकते हैं देना चाहिए
आने वाली 2 अक्टूबर महात्मा गाँधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है
स्वच्छ भारत मिशन को 2 वर्ष हो रहे हैं
मैं गाँधी जयंती से दीवाली तक खादी का कुछनकुछ खरीदने के लिये तो आग्रह करता ही रहता हूँ
इस बार भी मेरा आग्रह है कि हर परिवार में कोईनकोई खादी की चीज़ होनी चाहिये ताकि ग़रीब के घर में दीवाली का दिया जल सके
इस 2 अक्टूबर को जबकि रविवार है एक नागरिक के नाते हम स्वयं स्वच्छता में कहींनकहीं जुड़ सकते हैं क्या 2 घंटे 4 घंटे फिजिकली आप सफ़ाई के काम में अपनेआप को जोड़िये और मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो सफ़ाई अभियान में जुड़े उसकी एक फोटो मुझे नरेंद्रमोदीअप्प पर आप शेयर कीजिए
वीडियो हो तो वीडियो शेयर कीजिए
देखिए पूरे देश में हम लोगों के प्रयास से फिर एक बार इस आंदोलन को नई ताक़त मिल जाएगी नई गति मिल जाएगी
महात्मा गाँधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुण्य स्मरण करते हुए हम देश के लिए कुछनकुछ करने का संकल्प करें
मेरे प्यारे देशवासियो जीवन में देने का अपनेआप में एक आनंद होता है
कोई उसे रिकॉग्नाइज करे या ना करे
देने की ख़ुशी अद्भुत होती है
और मैंने तो देखा पिछले दिनों जब गैस सबसिडी छोड़ने के लिए मैंने कहा और देशवासियों ने जो उसको रिस्पोंड किया वो अपनेआप में ही एक बहुत बड़ी प्रेरक घटना है भारत के राष्ट्रीय जीवन की
इन दिनों हमारे देश में कई नौजवान छोटेमोटे संगठन कॉर्पोरेट जगत के लोग स्कूलों के लोग कुछ एनजीओ ये सब मिल करके 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर कई शहरों में जॉय ओएफ गिविंग वीक मनाने वाले हैं
ज़रुरतमंद लोगों को खाने का सामान कपड़े ये सब एकत्र करकर के वो पहुँचाने का उनका अभियान है
मैं जब गुजरात में था तो हमारे सारे कार्यकर्ता गलियों में निकलते थे और परिवारों के पास जो पुराने खिलौने होते थे उसका दान में मांग करते थे और जो खिलौने आते थे वो ग़रीब बस्ती की जो आंगनबाड़ी होती थी उसमें भेंट दे देते थे
उन ग़रीब बालकों के लिए वो खिलौने इनका अद्भुत आनंद देख कर के ऐसा लगता था कि वाह मैं समझता हूँ कि ये जो जॉय ओएफ गिविंग वीक है जिन शहरों में होने वाला है ये नौजवानों के उत्साह को हमने प्रोत्साहन देना चाहिये उनको मदद करनी चाहिये
एक प्रकार का ये दान उत्सव है
जो नौजवान इस काम में लगे हैं उनको मैं हृदय से बहुतबहुत शुभकामनायें देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो आज 25 सितम्बर है पंडित दीनदयाल उपध्याय जी की जन्म जयंती का आज अवसर है और आज से उनके जन्म के शताब्दी वर्ष का प्रारंभ हो रहा है
मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता जिस राजनैतिक विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं उस राजनैतिक विचारधारा को व्याख्यायित करने का काम भारत की जड़ों से जुड़ी हुई राजनीति के पक्षकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुरस्कृत करने के प्रयास वाली विचारधारा के साथ जिन्होंने अपना एक राजनैतिक दर्शन दिया एकात्ममानव दर्शन दिया वैसे पंडित दीनदयाल जी की शताब्दी का वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है
सर्वजन हितायसर्वजन सुखाय अन्त्योदय का सिद्धांत ये उनकी देन रही है
महात्मा गाँधी भी आखिरी छोर के व्यक्ति के कल्याण की बात करते थे
विकास का फल ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति को कैसे मिले हर हाथ को काम हर खेत को पानी दो ही शब्दों में पूरा आर्थिक एजेंडा उन्होंनें प्रस्तुत किया था
देश उनके जन्मशताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाए
समाज का सरकारों का हर किसी का ध्यान विकास के लाभ ग़रीब को कैसे मिलें उस पर केन्द्रित हो और तभी जाकर के देश को हम ग़रीबी से मुक्ति दिला सकते हैं
मैं पिछले दिनों जहाँ प्रधानमंत्री का निवास स्थान है जो अब तक अंग्रेज़ों के जमाने से रेसकोर्स रोड के रूप में जाना जाता था
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त प्रधानमंत्री के निवास स्थान वाले उस मार्ग का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है
वो उसी शताब्दी वर्ष के ग़रीब कल्याण वर्ष का ही एक प्रतीकात्मक स्वरूप है
हम सब के प्रेरणा पुरुष हमारी वैचारिक धरोहर के धनी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आदरपूर्वक नमन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो विजयादशमी के दिन ही 2 साल पहले मन की बात की मैंने शुरुआत की थी
इस विजयादशमी के पर्व पर 2 वर्ष पूर्ण हो जाएँगे
मेरी ये प्रामाणिक कोशिश रही थी कि मन की बात ये सरकारी कामों के गुणगान करने का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए
ये मन की बात राजनैतिक छींटाकशी का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए
ये मन की बात आरोपप्रत्यारोप का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए
2 साल तक भाँतिभाँति के दबावों के बावजूद भी कभीकभी तो मन लालायित हो जाए इस प्रकार के प्रलोभनात्मक वातावरण के बावजूद भी कभीकभी नाराज़गी के साथ कुछ बात बताने का मन कर जाए यहाँ तक दबाव पैदा हुए लेकिन आप सब के आशीर्वाद से मन की बात को उन सब से बचाए रख कर के सामान्य मानव से जुड़ने का मेरा प्रयास रहा
इस देश का सामान्य मानव मुझे किस प्रकार से प्रेरणा देता रहता है
इस देश के सामान्य मानव की आशाआकांक्षायें क्या हैं और मेरे दिलोदिमाग पर जो देश का सामान्य नागरिक छाया रहता है वो ही मन की बात में हमेशाहमेशा प्रकट होता रहा
देशवासियों के लिये मन की बात जानकारियों का अवसर हो सकता है मेरे लिये मन की बात मेरे सवासौ करोड़ देशवासियों की शक्ति का एहसास करना मेरे देश के सवासौ करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को बारबार स्मरण करना और उसी से कार्य की प्रेरणा पाना यही मेरे लिये ये कार्यक्रम बना
मैं आज 2 वर्ष इस सप्ताह जब पूर्ण हो रहे हैं तब मन की बात को आपने जिस प्रकार से सराहा जिस प्रकार से संवारा जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए मैं इसके लिए भी सभी श्रोताजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ
मैं आकाशवाणी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी इन बातों को न सिर्फ प्रसारित किया लेकिन उसको सभी भाषाओं में पहुँचाने के लिए भरसक प्रयास किया
मैं उन देशवासियों का भी आभारी हूँ कि जिन्होंने मन की बात के बाद चिट्ठियाँ लिख करके सुझाव दे करके सरकार के दरवाज़ों को खटखटाया सरकार की कमियों को उजागर किया और आकाशवाणी ने ऐसे पत्रों पर विशेष कार्यक्रम करके सरकार के लोगों को बुला करके समस्याओं के समाधान के लिये प्लैटफार्म प्रदान किया
तो मन की बात सिर्फ 1520 मिनट का संवाद नहीं समाजपरिवर्तन का एक नया अवसर बन गया
किसी के भी लिये इससे बड़ा संतोष का कारण क्या हो सकता है और इसलिए इसको सफल बनाने में जुड़े हुए हर किसी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनका आभार प्रकट करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो अगले सप्ताह नवरात्रि और दुर्गापूजा का पर्व विजयादशमी का पर्व दीपावली की तैयारियाँ एक प्रकार से एक अलग सा ही माहौल पूरे देश में होता है
ये शक्तिउपासना का पर्व होता है
समाज की एकता ही देश की शक्ति होती है
चाहे नवरात्रि हो या दुर्गापूजा हो ये शक्ति की उपासना समाज की एकता की उपासना का पर्व कैसे बने जनजन को जोड़ने वाला पर्व कैसे बने और वही सच्ची शक्ति की साधना हो और तभी जाकर कर के हम मिल कर के विजय का पर्व मना सकते हैं
आओ शक्ति की साधना करें
एकता के मन्त्र को लेकर के चलें
राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिये शांति एकता सद्भावना के साथ नवरात्रि और दुर्गापूजा का पर्व मनाएँ विजयादशमी की विजय मनाएँ
बहुतबहुत धन्यवाद